साइड में शेल्फ लगी हुई हैं उन शेल्फों के अंदर भी अलग अलग तरह का सामान रखा हुआ है।

सामने की तरफ हरे हरे पेड़ है बीच में घास और रंग बिरंगे फूल--

लगे हुए हैं कुछ पीले रंग के कुछ ऑरेंज कलर के लाल कलर के फूल नजर आ रहे हैं और बिजली के खंभे भी लगे हुए हैं पीछे की तरफ।

टेबल लगी हुई है। इस टेबल के ऊपर कंप्यूटर रखा हुआ है।

मिट्टी में कुछ छोटे छोटे पेड़ उगे हुए हैं और कुछ कूड़ा करकट भी पड़ा हुआ है।

व्यक्ति खड़ा हुआ है इसमें नीले रंग की शर्ट और पैंट पहनी हुई है एक लाल रंग का डस्टबिन में पास में रखा हुआ है एक स्टॉल बनी हुई है इसके ऊपर --

लगे हुए हैं इन गाड़ियों के ऊपर पीछे की तरफ हरे हरे ऊंचे पेड़ हैं।

कुछ जुड़े के डिजाइन बने हुए हैं और कुछ लिखा हुआ भी है।

ये बहुत बड़ा खाली मैदान है पीछे की तरफ हरे हरे बहोत सारे ऊंचे पेड़ हैं और कुछ घर बने हुए हैं।

काउंटर के ऊपर एक लाल सी किताब भी रखी हुई है और एक कुर्सी भी--

उनके अंदर बहुत सारा समान रखा हुआ है कुछ गद्दे के--

सामने की तरफ एक बहोत बड़ा स्टेज बना हुआ है।

उन सल्फो में बहोत सारा सामान रखा हुआ है। अलग अलग--

भरा हुआ है कुछ बास्केट्स हैं बास्केट के अंदर भी मछलियां--

रिज रखे हुए हैं कुछ व्यक्ति यहां पर खड़े हुए हैं।

बगल में कुछ गत्ते के डब्बे रखे हुए हैं नीचे की तरफ भी कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं।

टेबल के ऊपर बहोत सारे पैकेट्स रखे है एक पानी की बिशलेरी की बोतल भी--

कुछ लोग साइड में खड़े हुए हैं इन लोगों ने अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए हैं नीचे की तरफ कुछ फर्श पर पानी पड़ा हुआ है।

डाला हुआ है एक व्यक्ति का अंगूठा भी नजर आ रहा है प्लेट के ऊपर।